यहां पर रूम की जमीन पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है और इसके सेलिंग में कई सारे लाइट भी लगे हुए हैं।

यहां पर इक रूम के सीलिंग में कई सारे पंखा एवं लाइट दिखाई दे रही है ।

यहां पर बैलून रंग बिरंगा है एवं यहां पर हैप्पी बर्थडे का स्टीकर चिपकाए गया है।

यह एक पार्क का दृश्य है यहां पर पार्क की जमीन में ईंटें का प्रयोग किया गया है।

यह एक चर्च का दृश्य है जहां पर एक युवक माइक में भाषण दे रहा है एवम् उसका मुंह ब्लर किया गया है।

यहां पर कई सारे आदमी भी दिखाई दे रही है यहां पर आदमी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा पोस्टर भी है जिस पर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर काउंटर भी है जो की टाइल्स की मदद से बनाया गया है यहां पर ड्रम भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर दीवाल में पेंट किया गया है एवं सीलिंग में भी पेंट किया गया है ।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

यहां पर इसके बगल में एक कपड़े से ढका गया है।

यहां पर कई सारे पिलर दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कई सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं जोकि अपने सरो पर टोपी पहने हुए हैं।